यह एक पार्क से लिया गया शहर की पूरा दृश्य है यह शहर काफ़ी डेवलप लगता है और यहाँ पर इस शहर में --

यह एक रेस्टुरेंट का दृश्य है और इस रेस्टुरेंट का नाम सुन कर ही हँसी लगती है इस रेस्टुरेंट का नाम सेकंड वाइफ है इसका कहने का मतलब हो सकता है --

की यह अपने वाइफ से भी यह अपने वाइफ जैसा खाना बनाकर हमें देगी और यह रेस्टोरेंट देखने में भी काफी अच्छा लगता है और इसकी जो आउटलुक है वो बहुत अच्छी है लाइटिंग भी अच्छी है।

यहाँ पर कुछ कार डैमेजड है और कुछ कार अच्छे है या हो सकता है अंदरूनी खराबी हो यहाँ पर ज्यादातर कार्स खराब ही पड़े हुए हैं।

यह यूनियन बैंक है और यहाँ यूनियन बैंक का शाखा है और इस यूनियन बैंक के शाखे मे आज बहुत भीड़ नजर आ रही है।